यह रोड किनारे एक बहुत सारे पार्किंग किया हुआ है। टेंपू है। बहुत सारी गाड़ियां चल रही है। बहुत बड़े-बड़े पेड़ है और छोटा-सा झोपड़ीनुमा करके एक दुकान भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे गाड़ी लगी हुई भी है पार्क की हुई है।

यह एक मछली मार्केट का दृश्य है। जिसमे एक महिला मछली को बेचते हुए बहोत सारे कस्टमर खरीद रहे है। बहुत प्रकार की मछली है। दस पंद्रह तरह की मछली है। इजना है। कौन-कौन तरह का मछली है। बहुत अच्छा सजाई हुई है मार्केट ।